यह फ़ोटो एक शादी समारोह का है जिसमें शादी होने से पहले शादी होने से पूर्व --

और इसमें यूनिसेक्स सैलून लेडीज़ एंड अह जेंट्स ब्यूटी एंड बॉडी स्पा --

अ इसमें अइ व्यक्ति आये हुए हैं। व्यक्ति अपने अ स्थान पर बैठे हुए हैं और उसे देख रहे हैं।

यह एक हिंदू धर्म का --

नारी के बारे में दर्शाया गया है। न- नारी --